मंदिर का फोटो ओय होए होय मिर्चाये और तीन चार तरह का लोग लिआ मिर्चाये और लड़का मिल जाए और लड़का मिल जाये हो ।